पोल के ऊपर एक गार्ड व्यक्ति बैठा हुआ है।

एक गेट लगा हुआ गेट के अंदर बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई है।

पीछे तीन-चार लोग बैठे एक लेडिज भी बैठी हुई है जो इंतज़ार में --